यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी उग रहे हैं।

ये एक ऑफिस की तस्वीर है यहां पर एक आदमी कम्प्यूटर पर काम कर रहा है मेज पर एक बैग रखा हुआ है।

कोल्ड डिंग की बोटस स्कैनर रखा हुआ है और यहां पे लाइटे जल रही है।

यह एक जुतें की दुकान हैं यहाँ पे बहोत सारी--

रहे हैं यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई यहां पे वॉटर कूलर भी लगा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारी हरी-हरी घासे उग रही है।

नहा रहे हैं यहां पे घासे भी उग रही है और जो बच्चे झूले के ऊपर खड़े हुए हैं।

यह एक पार्क की तस्वीर है यहां पे पानी का फुवारा भी है।

यह एक किचन की तस्वीर है यहां पर

व दीवारो पर सफेद कलर का पेंट किया गया है।

यहां पे जिओ इंडिया का स्मार्ट फोन है।

जिसे पीले कलर से पेंट किया गया है यहां पे सिटी लगी हुई दीवार पर--

ऊपर झंडा लहराया गया है यहां पे बहोत सारी खिड़कियां है यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे गाड़ी खड़ी हुई है।

यह एक परचुन की दुकान जिस पर चिल्ड्रन बुक्स लिखा हुआ है यहां पर एक आदमी सामान ले रहा--

यह एक मॉल की तस्वीर यहां पे बहोत सारे कट्टे रखे हुए हैं।

यहां पे एक बच्ची झूला झूल रही है यहां पर पानी की पाइप भी रखी है यहां पर सामने एक लेडिज --